ये एक बस स्टैंड का चित्र दिखाई दे रहा है।

वहाँ पे एक लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरा रखा हुआ है और ये दो व्यक्ति एक-एक-एक-एक व्यक्ति से बातचीत वगैरा भी कर रहे हैं।

ये अपनी बस पूरी सजाये हुए हैं और इस बस के इस बस में फूल वगैरा भी लगे हुए हैं।

और ये चट्टान के बीचों बीच एक व्यक्ति फँसा हुआ है और दो व्यक्ति फँसे हुए हैं और ये व्यक्ति एक व्यक्ति को हाथ दे रहा है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को खींचने--

और ये लोग आपस में कुछ बातचीत वगैरा कर रहे हैं और इस गुफा के बाहर कई सारे लोग भी खड़े हु --